लोग को देख रहे होंगे आप और ये ए डांस करती हुई और एक दीदी ब्लू पहनी है।

ये जो देख रहे होंगे अ आपका छोटे-छोटे पाइप से ने ऊपर तक बनाया है।

ये केनरा बैंक अअअ ये देख रहे होंगे आप बैंक और यहाँ दूकान भी है।

और यह देख रहे होंगे शटर भी लगी हुई है और दो ए_सी भी लगी हुई है और यहां पेड़ देख रहा होगा लगा।

ये गिसस लोग का ये गुड़ देख रहे होंगे आप लगा हुआ है।

जाली लगी है इसमें और ब्लू कलर पुता है उसमे और एक और है बाजु में और

और ये पार्ट भी रखते भी हैं|

और यहाँ एक वॉच भी लगी हुई है देख रहे होंगे आप।